और ऊपर यहाँ पर चद्दर की छत बने हमें दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर हमें एक बास्केट दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारे टमाटर रखे हुए दिखाई दे रहे है और कुछ टमाटर लाल दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमें एक पार्क दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही हैं बाज के--

बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं घर उन भी हमे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।